यहां एक आदमी दिख रहा है सफेद रंग का शर्ट और जीन्स पहन के--

बाहर में एक लड़का बॉटल हाथ में लिए सिरप का खड़ा है।

तजिया लगाया गया है तजिया बना के एक काले रंग का कुर्ता में लड़का खड़ा है व्हाइट पाइजामा में।